और बड़ी डिब्बे भी रखे हुए हैं अलमारी बनी है उसी पर सब बोतले और डीब्बे रखे हुए--

यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है।

सामने नहीं देख रहा है और जिम की मशीन के पीछे खड़ा हुआ है।

यहाँ पर ऊपर लाइटें लगी हुई हैं।

टेबल पर किनारे कुछ और भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

उखिये झाड़ियां भी दिखाई दे रहीं--

कुछ दुकानें बंद है और कुछ खुली हुई हैं।

यह भारत गैस का ऑफिस है यहां पर बाहर फायर ब्रिगेड की--

और ये टेबल पर लैपटॉप रखा हुआ है लैपटॉप खुला हुआ है उसकी कीबोर्ड दिख रही हैं।

ये एक पार्किंग की जगा है शायद ये--

अलमारियों पर सजे गुलदस्ते देखने में बहुत--

बिल्डिंग में बहुत सारी खिड़कियां भी ल--

ऊपर लाइटें रख लगी हुई हैं और नीचे फर्श नहीं है बल्कि मिट्टी लगी हुई है।

बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है देखने में।

फिल्टर वाली मशीन के का स्विच लगा हुआ है और भी बहोत सारे स्विच --

पीछे एक साइकल भी नजर आ रही है साइकल पर शायद आदमी बैठा हुआ है।

बहुत बड़ा हॉल नजर आ रहा है बहोत अच्छा हॉल है ये।

दू तक मैदान ही मैदान नजर आ रहा हैं।

और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में नीचे कारपेट बिछा हुआ है और उधर भी बहुत बड़ी-बड़ी मशीनें हैं ।

जो बहोत अच्छी लग रही है देखने में।

बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ नजर आ रहे हैं ।

औरतें भी हैं और आदमी भी हैं कुछ औरते शायद खेती किसानी का काम कर रही हैं और एक लड़की भी बीच में दिख रही है।

यहां पर कोई मेला टाइप का लगा है शायद ।

और एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है ।

सामने पेड़ दिखाई दे रहा है।

देख कर के ऐसा खूबसूरत मंजर --

गाड़ी खड़ी हुई है पार्किंग में ऊपर भी जाने का रास्ता है नीचे बाहर एक स्कूटी खड़ी हुई है।